एक व्यक्ति जा रहे है जो बास का सीढ़ी लगाए हुए हैं।

यह एक जिम का चित्र है।

जहां बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यह एक मॉल का चित्र है।

और पीछे तीन पिलर दिख रहे हैं।

यहां कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं।

और इसके दीवारों को एक दो फोटो चिपकाए हुए हैं।

जोकि सभी बुक रैक के अंदर रखे हुए हैं।

और आस पास बहुत सारे झाड़ियां हैं।

और एक फूल रखे हुए है।

यह एक साड़ी का दुकान है।

जो एक रेड कलर का साड़ी टांगे हुए हैं।

और इस दुकान के अंदर बहुत सारे रैक के ऊपर साड़ी रक्खे हुए है रखे हुए हैं।

बहुत सारे अंदर में कपड़े टांगे हुए हैं।

दीवार व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।